अंदर में बहोत जूस दिखाई दे रहे हैं।

पीछे हम लोग को बड़ा बड़ा गच्छी दिखाई दे रहा है पीछे मंदिर भी दिखाई दे रहा है।

और यहां एक ठो गार्डन दिखाई दे रहे हैं।

बहोत हरियाली ही हरियाली है।

पीछे में पिज़्ज़ा का फोटो बना हुआ है।

पीछे बालकनी जैसा दिखाई देरा--

यह फोटो में एक ठो ग्रोसरी स्टोर दिखाई दे रहा है यहां पे बहुत ज्यादा सेल्फ लगा हुआ है।

ये फोटो में हम लोग को एक फंक्शन दिखाई दे रहे--

पीछे में बहुत ज्यादा घर दिखाई दे रहा है।

बहोत ज्यादा गच्छी भी दिखाई दे रहा है।

यह फोटो में हम लोग को एक दुकान दिखाई दे रहा है।

पीछे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे--

यह फोटो में हम लोगों को एक शोरूम दिखाई दे रहा है यहां पे ऊपर पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

ये फोटो में हम लोग का स्टेशनरी शॉप जैसा दिखाई दे रहा यहां पे बहोत ज्यादा किताब रखा है यहां बहोत ज्यादा स्टेशनरी का समान है।

वाइट कलर का बकरी दिखाई दे रहे है।

यहां पे बहोत ज्यादा ज्वेलरी रखा हुआ है बीच में एक बड़ा सा ज्वेलरी रखा है।

यहां पे बहोत ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है।

पीछे हम लोगों को गोल्डन कलर का वॉल दिखाई दे रहा है।

हम लोग को बहुत ज्यादा फूल दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हम लोग को एक रूम दिखाई दे रहा है यह रूम में एक बड़ा बिस्तर लगा हुआ है कंबल भी दिखाई दे रहा है एक पिलो दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हम लोग को एक बुद्धा टेंपल दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हम लोग को एक घर दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का बेडशीट दिखाई दे रहा है वाइट कलर का पिलो दिखाई दे रहा है।

पीछे हमलोग को बड़ा बड़ा गछी दिखाई दे रहे है।

ऊपर हम लोगों को बहोत बादल दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक इंसान दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का डस्टबिन दिन में दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हम लोग का एक बड़ा सब बिल्डिंग दिखाई दे रहा ये वाइट कलर का बिल्डिंग है।

यह फोटो में हम लोग को एक फील्ड दिखाई दे रहा है की फील्ड बहुत ज्यादा घास लगा हुआ है।

गच्छी भी दिख रहा है।

पीछे उनलोगो थोड़ा दुकान दिखाई दे रहा है।